यहा बहुत दो बुढे व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो की खड़े हैं और उसकी होटल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में काफी सारे आदमी इसमें जो की करीब हाथ में प्लेट लेकर खाना खा रहे हैं ।

और एक बोर्ड लगे हुए हैं और इसके बगल में बहुत सारे पेड़ पोधे हैं एक रोड भी हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते है जगह --

नीले कलर का कपड़ा पहने हुए है और काफी ज्यादा आदमी यहां बैठे हुए है जो की कोई चादर ओढ़े हुए है कोई जूता पहने हुए है और कोई सीढ़ी पे बैठे हुए है जो अच्छे लग रहे है देखने में ---

यहां जो है झंडा फहराया जा रहे है और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये व्यक्ति सब जो है सब वह झंडा फहरा रहा है और यह देखने में भी बगल का बिल्डिंग काफी अच्छा लग रहा है ये

ये येलो कलर का पिंक कलर का साड़ी पहनी हुई हैऔरत है जो ईट का है।

के बाहर मे शीशा भी लगे हुए है देखने मे बहुत ही ज्यादे अच्छे लग रहे है और ये बहुत ही बड़े दुकान है और इसपे बहुत सारे कुर्सी लगे हुए है जो कि लाल कलर का है।

यहाँ कोई कन्ट्रशन का काम चल रहा है जिसमें की यह कॉपी लेके बता रहे है और इसमें बहुत सारे छड़ बंधे हुए है और यह कई कई नोच के बने हुए है और यह बहुत सारे मजदूर काम कर रहे है।